और बिल्डिंग्स में बहोत सारी विंडोस दिख रही है जो वाइट और--

पीछे की हमें व्हाइट कलर की दीवार दिखाई दे रही है साथ में ही ब्लैक कलर की मूर्ती दिखाई दे रही है।

साथ मे हमें ग्लास से भरा कुछ टेबल --

लड़कियां है और कुछ लड़के हैं जिन्होंने की व्हाइट रेड --

और यहां पर एक पंखा भी हमें दिखाई दे रहा--

और नीचे की साइड हमें बिल्कुल ब्लैक कलर दिख रहा--

और साथ में ही एक विंडो लगी हुई है और कुछ लकड़ी का काम दीवारों पर ब्राउन कलर से हुआ--

और रेड कलर का एक बॉक्स भी दिखाई दे रहा--

बॉक्स दिखाई दे रहे है जिनके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक सामान भी पड़ा हुआ है।

हमें दिखाई दे रहा है यहां जिम --

यहां पर हमें कुछ आग जलती हुई दिखाई दे रही है।

साथ में ही आसमान में येलो व्हाइट --

दिखाई दे रहा है और साथ में फ्लैट भी दिखाई दे रहा है।

कुछ व्हाइट व्हाइट कलर के बलफ दिख रहे हैं।

जो की येलो व्हाइट और पिंक कलर के कपड़े दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर हमें यहां व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है।